तस्वीर में आप देख--

है पीछे बैक ग्राउंड में और भी लोग--

इस तस्वीर में आप किसी के--

फौजी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाका हारी ढाबा--

आप को झील में दिखाई दे--

इस तस्वीर में आप--